यह सड़क जा रही है सड़क के इस पार भी घास है इस पार भी थोड़ा घास है।

स्विमिंग पूल पर रोशनी पड़ रही है जिसकी वजह से यह बहुत चमक रहा है।

यहां से लाइटें भी लगी गई है वहां से भी कु --

फ्लाईओवर लगाया गया है नीचे लगाए गए हैं।

तारक के इस साइड से बहुत एक ही किस्म के पौधे लगाए गए हैं।

यहां पे रेक्स में कपड़े लगे हुए हैं।

ब्लू कलर की लाइट गिर रही है जिससे फव्वारे का पानी बिल्लू रंग से चमक रहा है।

पांच फूलों के वेज रखे गए हैं पहला वे--

एक लड़का नजर आ रहा है जो कि बहुत बड़ी चट्टान पे खड़ा है पीछे से भी उसको बड़े चट्टान हैं यहां से थोड़ी--

टी-शर्ट लगा के है इसने काला चश्मा भी पहना है हाथ में कुछ बांधा भी है।

वो सड़क नजर आ रही है जिसके पास एक मोटरसाइकिल खड़ी की गई है।

ब्राउन कलर किया गया है और बीच में उसको सफेद कलर लगाया गया है जिसको एक --

ग्रिल लगाई गई है उस पारक के अंदर पौधे लगाए गए हैं मकान के उस साइड से दूसरा एक मकान है जो सफेद है जिसका अच्छा --

एक दवाई की दुकान है जो दवाइयां बेचता है इसने शेल्फ रखे हैं जिनमें कई तरीके की दवाई रखी गई है।

जा रहे हैं नाव के नीचे एक बड़ा समंदर है यहां से दूसरी नाव भी आ रही है जिसमें दो लोग बैठे हैं।

हरे कलर का कुछ रखा गया है यहां से एक गुलाबी फूल भी है।

जिसके पार से छोटे-छोटे कुछ दाने हैं।

यह क्लासरूम है जहां बच्चे पढ़ रहे हैं।

टीचर का हाथ एक बोर्ड पे है जो बच्चों को दिखा रहा है।

बच्चों की कुर्सियां ब्लू कलर की है जिसके आगे एक--

मुझे कमरा नजर आ रहा है जिसमें बहुत बेंच लगाए गए हैं बेंचों के उस पर दो खिड़कियां है।

काली बड़ी चेयर पर बैठा है उस साइड --

उधर से एक फ्लाईओवर भी जा रहा है मोटरसाइकिल पर एक आदमी उसके पीछे औरत भी है।

यह एक बड़ी जगह है जहां पे कई सारे टेबल और कुर्सियां लगी गई है।

ग्लासेस और धनी रखी गई है।

शीशे की बिल्डिंग भी है इस साइड सड़क को टाइल लगे हुए हैं।

कुछ बंदे बैठ रहे हैं सड़क के इस साइड से एक चाचा बैठा है।

गाड़ी काफी बड़ी है गाड़ी के इस साइड से एक आदमी खड़ा है जिसने पीछ पे अपने--

यह स्विमिंग पूल है जो रोशनी में काफी चमक रहा है।

यहां पे जो डंडे लगे गए हैं उनको पकड़ के--

सड़क में कई सारे लाइटों के पोल भी है उस साइड --

जो कि खड़ी है गाड़ियों के पीछे एक खूबसूरत इमारत नजर आ रही है।

गाड़ियों के इस साइड से पौधे भी लगाए गए--